एक इनकंप्लीट बाइक रखा हुआ है। उसके बगल में कुछ कार्टून हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है।

हॉल के अंदर बहुत सारे बुद्धा का फोटो और फ्रेम्स रखे हुए हैं।

कपरे के ऊपर किसीम किसीम के रंगों और शेप्स में क्राफ्ट्स रखे हुए हैं।

सोने से धक्का घर के अगल बगल में घने जंगल है।

नदी के किनारे बहोत सारे पत्थर हैं।

बहुत सारे सीटों के नीचे ग्रीन कारपेट बिछाया हुआ है।

प्लेग्राउंड के अंदर प्लेयर्स गेम खेल रहे हैं।

मंदिर के बाहर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं।

इस शॉप के अंदर किस्म किस्म के बॉउल्स और प्लेट्स रखे हुए हैं।

रेस्टोरेंट के अंदर के पर्दा रेट और व्हाइट के कांबिनेशन में है।

मुझे इस तस्वीर में एक लंबा सा चर्च हॉल दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे कुछ लहंगे लटकाए गए हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा पीकॉक का स्टेचू दिखाई दे रहा है।

गेट के ऊपर एक साइन बोर्ड लगाया हुआ हैं।

तीन इंसान में से एक ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है।

आधा बना घर के बगल में पूरा बना एक घर है।

बीच में मिक्स और ड्रम सेट रखे हुए हैं।